और ग्रीन दिख रहा --

अ मतलब ये कोई खेत है जहाँ पे नीचा जगह होने के वजह से --

यहाँ यह तस्वीर एक मछली मंडी की है |

काली जी का है।